के नाम से स्टोर है बाइबल बुक्स म्यूजिक गिफ्ट और--

एक लड़का है वो कैफे पर आया हुआ है चाय और बिस्किट खाने।

मेन्यू रखा हुआ है टिशू पेपर रखा हुआ है।

ये एक क्लास रूम है विंडो ए_सी लगा हुआ है।

और ऑर्डर ले रहे हैं पेंट शर्ट में लड़की खड़ी हुई है।

यह एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है मिरर वर्क हुआ उआ है पी --

और गाड़ियां खड़ी हुई हैं पार्किंग हुई हुई है एक साइड --

एक आदमी परचेजिंग कर रहा है एक औरत सेल कर रही है और उसके बराबर में एक सेंटर है।

और भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं बोतल्स रखी हुई हैं।

पत्थर रखे हुए हैं पत्थर के बराबर में ग्रीनरी हुई हुई है।

एक कपल जा रहा है लोग एक--

उसके दो बंदे खड़े हुए हैं एक बंदे तस्वीर खींच रहा है स्प्रे रखा हुआ है।

ये एक ब्रेंड की शॉप है ऑरेंज कलर की शर्ट्स हैं।